एक बड़ा सा ग्राउंड है। उसमें एक मकान बना हुआ है। एक खम्भा है उसमें लाइटें लगीं हुईं हैं।

यहाँ पे एक बड़ा सा मैदान है। यहाँ पे बहोत सारे लोग हैं। आसपास पेड़ हैं। कुर्सियां रखी हुई हैं।

यहाँ पे एक दुकान है। दुकान म् बहोत सारे बॉक्स रखे हुए हैं। एक ब्रेंच रखी हुई है उसी पे एक आदमी बैठा हुआ है।

यहाँ पे एक झांकी है। ये उउउउम् माताजी की मूर्ति है हाथ में तिरशूल लेयें हैं मुकुट लगाएं हैं।

लड़का दोनों हाथ से मशीन से कार के आगे छेद कर रहा है। कार के गेट नीचे निकरे रखे हुए हैं।

पौधे लगे हुए हैं आगे ईटें पड़ी हुई हैं।

यहाँ पे ये जंगल है। यहाँ पे बहोत शारे पेड़ हैं।

यहाँ पे एक बड़ा सा मैदान है। उसमें बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं। फूल मलाएं रखी हुई हैं।

यहाँ पे एक पुल है। पुल के नीचे एक विशाल नदी है उसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है।

बड़ा सा पहाड़ है पहाड़ पे एक बड़ा सा टॉवर लगा हुआ है बहोत बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

पीछे बहुत सारे पेड़ है आगे ईट पड़ी हुई है लकड़ियाँ पड़ी हुई है।

यहाँ पे एक हॉल है उसमें कुछ खम्भे लगे हुए हैं। ऊपर छत है। छत में लाइटें लगी हुई हैं। बहोत सारे पंखे लगे हुए हैं।

यहाँ पे रोड है। रोड पे एक ट्रक है | आगे एक खम्भा लगा हुआ है।

मकान के पीछे भी कुछ मकान है मकान के नीचे एक छोटी-सी झोंपड़ी है।